बहोत ही अच्छी नजर लग रही है और यहां पर बहोत सारी लाइट लगी है जो व्हाइट कलर की--

यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर झोले में झूल रहे हैं कुछ बच्चे हैं कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं कुछ औरते हैं।

पूरा आनंद ले रही है और यह झोला बहुत ही खतरनाक झोला है।

और ये पूरा मजा ले सकते हैं यहां पर यहां पर बहोत सारे रंग बिरंगी कलर भी दिखाई दे रहे हैं ब्लू पीला नीला काला बहोत सारे और रेलिंग पर भी कलर है।

और इसमें पूरा मजा आता है पुरा ना ऐसा लगता है जैसे जन्नत में चले गए हो और ये लड़कियां काफी सेक्सी भी लग रही है और बहोत ही वो--

कुछ नारंगी है कुछ सफेद है और बहोत ही अच्छा नजारा है एक व्यक्ति और दिखाई।

और यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइटें लगी हुई है और काफी मात्रा में यहाँ बहुत सारा माल रखा हुआ है।

और ये श्रीमंत हरिदास उच्च विद्यालय है।

और इसमें कुछ लाइट इसकी रेड है और कुछ सीधे भी लगे हुए।

और यहाँ पर एक दीवार से भी दिखाई दे रही है जो काफी मात्रा में काई जमी हुई है।

मच्छी मार्केट में बड़ी-बड़ी मच्छी रखी हुई है दो-तीन आदमी भी बैठे हुए हैं जिन्होंने मास्क लगवाए है एक ने रेड कलर का एक ने वाइट कलर का दूसरे ने भी रेड कलर का।

खाने में पूरा इसमें बहुत ज्यादा तादाद गर्मी होती है।

इनके मुंह काले से किए हुए हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है किसको तस्वीर है।

यहां पर आप देख रहे हैं कि लेंस मेट्रो सिटी है जो इंटरव्यू वेयरहाउ--

और आप देख रहे हैं नीचे छोटा-छोटा घास है एक खंबा भी खड़ा हुआ है जिसपे कुछ।

यहां पे कुछ रखे है जिनपे कपड़ा लाल हुआ है कुछ गुब्बारे लगे हुए है।

और यहाँ पर यीशु मसीह को फांसी पर चढ़ाया हुआ हैप्लस के निशान पर।

यहां पर ये कोई ये बैंक्वेट हॉल है जहां पर आप पूरा मजा आनंद ले सकते हैं ये रिसॉर्ट है।

और इस बिल्डिंग पर लिख कर लाइटे ही लाइटे लगी हुई है बहार भी है और अंदर भी।

और ये गोपाल कुंदु की दुकान है और यहाँ पर फूल भी लगे हुए हैं जो पीले कलर ।

और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है सीसी बहुत सारी है काली पीली नीली।

चॉकलेटी और पता नहीं वाइट पता नहीं कैसी कैसी है और वाइट कलर की कुछ।

और कुछ पत्थर भी लगे हुए हैं धरती पर और कुछ छोटा-छोटा घास भी दिखाया जा रहा है जो हरे कलर का है।

की कटिंग हुई हुई है कटिंग बहुत अच्छी की हुई है।

कटिंग की हुई है और चारों तरफ जाले ही लगे हुए हैं और फूल भी दिखाई दे रहे हैं प्ले करके जो बहुत--

एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है और एक गाड़ी भी है जो ब्लैक कलर की है और कुत्ता जो है वो--

और यहाँ रेलिंग भी लगी हुई हैजो ब्लैक कलर की हैऔर ए_सी भी लगे हुए हैं।